और वहाँ पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ दिखाए दे रहे हैं समुंदर के बीच मे एक नांव है दो आदमी उसे चला--

और पहाड़ो के अंदर से दो आदमी झांक रहे हैं ।

नाई की दूकान में एक आदमी कट्टिंग करवा के अपने बालो को दिखा रहा है।